इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा मॉल दिख रहा है।

मॉल पर अग्रवाल साड़ीज लिखा हुआ है मॉल के बाहर दो कार खड़ी हुई है।

जिसमें न्यू गोल्डन ट्रैवल्स लिखा हुआ है यहां पर एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट दिख रहा है यहां पर बहुत सारी टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं।

यहाँ ऊपर पिंक कलर के बोर्ड पे आइसक्रीम लिखा हुआ है।

इसके आसपास बहुत सारे पेड़--

बिल्डिंग पे लाल रंग से भगवान का --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

पार्क के आसपास बहुत सारे पेड़-पौधे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

टॉय की दुकान दिख रही है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं।

मंदिर के बाहर बोहोत सारे लोग भी खड़े हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक रोड दिख रहा है यहाँ सामने एक पीले रंग की बिल्डिंग भी है।

जहाँ औरतें खड़ी होकर पानी भर रही हैं।

इस चित्र में हमें एक दुकान दिख रहे है।

इस चित्र में हमें एक बोहोत बड़ा कॉलेज दिख रहा है जिस पर एम_पी भोज यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक बोहोत बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है।